पन्नी का रैपर भी नहीं उतरा है और सामने ग्लास वॉल है हाफ में ग्लास और हाफ में वुडन वर्क है।

हुं हुं हुं दो गमले रखे हुए हैं छोटे-छोटे कूलर रखे हुए हैं दो।

और बहुत सारा सामान रखा हुआ है और आसपास हरे हरे पेड़ हैं।

आसपास जाली वाली दीवारें बनाई गई है।

और ये इसके आसपास जो मट्टी है वो कच्ची मट्टी है उसमें बिल्कुल बारीक बारीक घास उगी हुई है।

भी एक वाल है और उसपे लाइटें चमक रही--

और यह ऑरेंज कलर के फूलों से बाहर का गेट सजाया जा रहा है।

ये इस चित्र के अंदर नीचे ब्राउन कलर क्रीम कलर की जमीन दिख रही है।

उसके पीछे देखेंगे तो दो ऑटो रिक्शा खड़े हुए पीले कलर के और ऊपर से ब्लैक कलर के हैं और साइड में कुछ रेड कलर का डब्बा टाइप लगा हुआ है।

और उम्म आसपास काफी हरियाली है पेड़ ही पेड़ हैं।

ये किराना शॉप की दु ह पिक्चर है इसमें ये तीन बोरियां रखी हुई है और एक टंकी रखी है स्टील की उसके ऊपर एक रजिस्टर रखा है।

और सामने कोक का फ्रिज रखा है उसमें ठंडा सामान रखा हुआ है।

यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक दो तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ मोबाइल चला रहा है।

और ये बहुत ही सुंदर लग रही है और इसमें आकर्षित करने वाला डिजाइन बना हुआ है।

इस चित्र के अंदर बहुत सारे गोले गोले गोले बने हुए हैं उसके अंदर आसपास लाइट जल रही है।

और ये पूरा खूबसूरत सी शॉप है ऊपर पी_ओ_पी है उसमें ब्लू और वाइट कलर की लाइटें हैं।

और पास में ही डंबल भी दिख रहें है।

उसके ऊपर एक सिंक भी लगा है पास में दो आसपास वाइट ग्रीन कलर के नल लगे हुए हैं बीच से उसके पाइप गए है और आसपास छोटे-छोटे बहुत छोटे-छोटी स्टूल्स हैं।

और यहां पर एक बच्चा है जो स्लाइडिंग करेगा और यहां पर ऑरेंज कलर की स्लाइडिंग र सीधी वाली है।

और इसका जो उम्म हाईलाइट किया गया है ग्रीन कलर से किया गया है।

और नीचे छोटे-छोटे प्लग लगे हुए हैं उन पे चेन टंगी हुई है।

और ये जो प्लान है ये भी तीन कलर के है रेड है सबसे ऊपर फिर बीच में है यलो और नीचे है ग्रे कलर का है।

घई इलेक्ट्रॉनिक्स है नीचे उसके कार खड़ी है और नीचे भी उत्ते में तीन शॉप्स अलग-अलग बनी हुई है उसमें एक शॉप में लाल कलर के डब्बे रखें हैं।

ठीक है और यहां पर है ना काफ़ी बड़ा शैडो बना हुआ है पूरा और नीचे की थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है और रेड कलर का भी यह कुछ स्टैन है।

मल्टी कलर से बनाया गया है लाइट ब्लू ब्लैक डार्क ब्लू ग्रीन --

और तालाब के अंदर एकल खंबा सा बना हुआ है।

आस-पास घर दिख रहे हैं और आसपास थोड़ी हरियाली भी दिख रही है।

लग रहा है बड़े-बड़े और उसका कटिंग में डिजाइन है।

और कि ये सामने उसके खेत दिख रहा है ऐसा लग रहा है गेहूं का खेत है।

और गेहूं के खेत के अंदर दो कारें खड़ी हुई हैं।

बसों के पास काफी सारे व्यक्ति दिख रहे हैं और बसों के ऊपर एक वो जो सहाय्य करता है वो हैं।

रंग बिरंगी कप रखे हुए हैं गुलदान रखे हुए हैं और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है एक व्यक्ति साइड बैठा हुआ है।

और इस शॉप में जो नीचे है वो ग्रीन कलर की नेट बिछी हुई है।

लाइट ब्लू कलर का कुछ इमारत है उसके ऊपर कोई बैनर लगा हुआ है।

यहां पर काफी सारी चेयर्स हैं उन चेयर्स के ऊपर काफी सारे--

अं व्यक्ति बैठे हुए हैं कुछ महिलाएं कुछ पुरुष हैं।

और नीचे गिरा ब्राउन कलर का कारपेट बिछा है।